रोड को नाप रहे हैं और काम कर रहे हैं।

बूढ़े औरतें बच्चे यहां पर सब लोग खाना खा रहे हैं।

रखे हैं मेकअप ब्रश भी है और नेल आर्ट भी यहां पर की जाती --

जोकि स्कूल में कंपटीशन था--

चित्र में एक फोटो दिखाई गई है जिसमें पीछे तो --